एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई मिल रहा है।

और यहां में कुछ लोग दिखाई दे रहे है काउंटर में है बैठा हुआ।

शायद रात का समय है कोई हॉस्टल मेडिकल या कोई पब्लिक सेक्टर का कोई बिल्डिंग हो सकता है देख के।

उसके पीछे में बहुत सारा पेड़ पौधा है।

केले के पेड़ भी दिखाई मिल रहा है।

इस फोटो में बहुत सारा फूल दिखाई मिल रहा है जो अलग अलग तरह का फूल है जैसे कि रोज मेरी गोल्ड और बहुत सारा और भी फूल दिखाई पड़ रहा है।

इसमें ईंटा का काम चल रहा है और अह कुछ पिलर पोस्ट दिखाई मिल रहा है जो इनकंप्लीट है।

ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका ऊपर में बहुत सारा पोस्टर्स लगा हुआ है।

और सामने भी दो तीन पेड़ है और आसमान पूरा सफेद और ब्लू है।

ऊपर आसमान पूरा ब्लू और बदला है।

का कलर ब्राउन है और बहुत सारा लाइट्स भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक लोहा का साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू हिस्टोरिकल विलेज बिस्मार्क नगर।

साइड का वॉल्स का कलर ब्लू है और पीछे में एक घर है जिसका कलर ग्रीन है।